एक बहुत ही बड़ा कमरा बना हुआ है जिसके ऊपर वाइट कलर का पेंट किया गया है एक लाइट जल रही है पीछे कि तरफ एक ए.सी. लगा हुआ है एक डॉग पड़ा हुआ है टेबल के ऊप--

सड़क बनी हुई है यहाँ पर आस-पास बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं एक आदमी खड़ा है जो की अंदर जाने के लिए खड़ा है उसने टोपी लगाई हुई है ऊपर जाने क लिए लोहे की जीने बने हुइ हैं।

का टाइम है बहुत खूबसूरत लाइटें जल रही है ग्रीन व्हाइट रेड कलर की --

एक छोटी सी कटोरी है ब्लैक कलर की जिसके अंदर कुछ दही रखा हुआ है बहुत सारी सैलेड रखी हुई है इस सैलेड में गाजर और--